एंड आप देख सकते है ये आपको खंडर सा मशीन दिख रहा होगा एंड ग्रे कलर आपको दिख रहा होगा एंड इसके अंदर आपको एक चद्दर दिख रही होगी एंड आप देख सकते है ग्रीन कलर का दिख रहा होगा आपको।

अंदर मे बहुत सारे समान रखे हुए है उस पैकेट के समान एण्ड आप देख सकते है यहाँ पर आपको बॉक्स मे कुछ मीठे के समान दिख रहे होंगे।

सोने का डिस लेडीज ने सोने का हार पेहना हुआ है --

हे एवरीवन जैसा की आप देख रहे है ये आपलोग देख सकते है और ये भी दिख जिसने यहाँ पर डांस अकेडमी का व्यू दिख रहा होगा दो लड़कियां तीन लड़के है एंड आप देख सकते है इसके हाथ में आपको एक स्मोक भी नज़र आ रहा होगा।

एंड आप देख सकते है आपके नीचे भी एक आदमी और एक लेडीज नज़र आ रही होगी लाइट्स वगेरा लगे है सम ऊपर देख सकते है एक पोस्टर लगा है।

एंड आपको यहाँ पर आदमी खड़े हुए सभी ने वाइट कलर की टोपी लगाई हुई सामने एक लड़का बैठा उसने वाइट कलर की टोपी लगाई है।